तथा यहाँ आगे की ओर जा रहा है। तेज धुप निकल रही है ग्राउंड में घास उगी हुई है। घास हरी कलर की है। बोतल में ब्लेक कलर का कुछ रखा हुआ --